सामने के रैक में एक छोटा पेड़ का हिस्सा दिखाई दे रहा है और नीचे के साइड में कुछ बड़े-बड़े पत्ते भी दिखाई दे --

शॉप का फोटो दिखाई दिख रहा है जिसके अंदर सामने एक बारकोड लगा हुआ दिख रहा है उसके ऊपर साइड में कुछ काँच की पन्नी लगी दिख रही थी जिसके ऊपर एक व्यक्ति का फोटो दिखाई दे रहा है।

डी.जे. की गाड़ी का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके हमें पीछे बहुत सारे स्पीकर लगे दिखाई दे रहे है। स्पीकर को ऊपर आगे से लोहे के ऐंगल से बांधा हुआ दिखाई दे रहा है। सामने ऊपर के साइड बांधा हुआ दिख रहा है। सामने के ऊपर साइड में कुछ काली कलर की लाइटें लगी दिखाई दे रही है और ऑरेंज कलर के रबड़ से बांधा हुआ दिखाई दे रहा है।

दिल बने हुए दिख रहे है कुछ दिल को उन्हें लकड़ी से लगा के रखा हुआ दिखाई दे रहा है तो कुछ दिल ऐसे खाली से दिखाई दे रहे है बीच में एक लाल कलर का फूल बना हुआ दिख रहा है सामने एक एक्टिवा दिख रही है और कांच पुलिस जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर और --

इसके ऊपर कुछ बैलून चिपके हुए दिखाई दे रहे है ऊपर की जगह व्हाइट दिखाई दे रही है पहने हुए दिख रहे है नीचे फर्श लगी है जिसके अंदर ब्लैक कलर के बने हुए दिखाई दे रहे है।

यह किसी शॉप का फोटो दिखाई दे रहे है जिसके अंदर शॉप और कुछ एटीएम बने दिखाई दे रहे हैं जिसमें कांच के दरवाजे और शटर दिखाई दे रहे हैं और शायद कुछ बैनर और पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी बिल्डिंग का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ पोस्टर लगा है जिसके ऊपर इंग्लिश में कुछ लिखा दिखाई दे रहा है। सामने गेट बना है जिसके--

और कुछ पाइप दिखाई दे रही है ऊपर के साइड देखो डंडे के ऊपर ट्यूबलाइट बंधी दिखाई दे रही उसके पास से वयरिंग जाती हुई एक व्यक्ति हाथ पकड़ के रखा है।

चर्च का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर प्लस का साइन बना है लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोगो को घर जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है सामने की साइड पे कुछ बैलून लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी बिल्डिंग के घर का फोटो दिखाई दे रहा है शीट बना दिख रहा है जिसके ऊपर गुमल कुछ लम्बी दीवारें बनी दिखाई दे रही है आइड साइड कुछ नीचे कुछ हरे कलर कारपेट बिछे दिखाई दे रहे है।